ये सामने बहुत सारी कल केले दिखाई दे रहे है बहुत सारे लोग यहाँ पर --

शानदार तरीके से लगा--

काफी तेज से पानी इसमें चल रहा--

ये मंदिर सा नज़र आ रहा है सामने एक ए_सी नज़र आ रही है टाइल्स लगे हुए नज़र आ रहे--